और एक उसके बगल में एक नीले कलर का--

यहां पे सिटी कैफे दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारे लड़के खड़े हैं और फोटो खी --

और एक यहां पे बूढ़े दादा एक कुर्सी पर बैठ कर अपनी आंख का जांच करा रहे हैं।

और बगल में मशीन रखी हुई है जिससे की आंख का पावर चेक कर--

यहां पे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

छह लोग दिखाई दे रहे हैं और एक औरत दिखाई दे रही--

एक पंखा और बहुत सारा फोटो लगा हुआ है।